सामने खुला सड़क नजर आ रहा है सड़क पे बहुत सी गाडियाँ चलती नजर आ रही है एक व्यक्ति चलते हुए दिख रहा है सड़क के किनारे बहुत बड़ा-बड़ा बैनर लगा हुआ है बैनर में बहुत ही सारे-ए ब--बड़े बड़े अक्षर में लिखे हुए नजर आ रहे है।

ये आराम से तंबू का मजा ले रहा है तंबू सामने तंबू लगे हुए हैं ग्रीन कलर के ये कर रहा है।

ये एक बहोत बड़ा गाँव नजर आ रहा है और हॉल मे पूरे नीचे भी टाइल्स लगी हुई हैं। और ऊपर बहोत ही खूबसूरत छत है लाइट लगी हुई हैं न्यू स्टाइल की लाईट लगी हुई हैं।

ये पुजारी होते हैं । सब एक लाइन से एक कतार में बैठ के पूजा कर रहे हैं।

बहोत खूबसूरत राधाकृष्ण स्टेचू है। राधाकृष्ण को प्रेम की प्रेम का प्रतीक माना जाता है कृष्ण भगवान हाथ मे बाँसुरी लिए हुए हैं और नीचे एक मोर भी दिख रहा है।

इसपे कुछ बहुत सारे बनके बैठे हुए है ऊपर एक एंकर भी है जो स्पीच देता हुआ नज़र आ रहा है। ऊपर बहुत लाइटिंग लगी हुई है और बहुत रंग बिरंगे पर्दे है।